साइड में मुझे इसके एक क्रिसमस ट्री दिख रहा है क्रिसमस टोपी दिख रही है लटकी हुई।

और ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर काबिल किचन लिखा हुआ है और यह बहुत ही सुंदर शॉप लग रही है।

और मुझे यहां पर बहोत ही सुंदर सजावट दिख रही है।